यह एक कॉलेज है और यह कॉलेज काफी बड़ा है । यहाँ बोहोत सारे छात्रा आते हैं पढने और यहाँ पे काफी अच्छी पढाई होती है । दूर-दूर से लोग आते हैं पढने। छात्रों पढ़ पढ़ते है । यहाँ पे शिक्षक भी काफी शिक्षित होते है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते है ।

ये यमहा शोरूम है और यहाँ पे यमहा की सारी बाइकें मिलती हैं और यमहा की बाइकें काफी अच्छी होती हैं । बहोत सारे लोग यमहा की बाइकें खरीदना पसंद करते हैं और इसको चलाने में बहोत मजा आता है । काफी माइलेज भी देती है ।